और इधर सामने की तरफ लाइटे और ऊपर सजावट की गई है ओर नीचे की तरफ फर्श है रंगीन।

या सूपर मार्केट की दुकान है जिसे ऊपर लिखा है सम सुपर मार्केट जिसके सामने से एक वर्द आदमी गुजर रहा है।

और सामने लड़कियां पेड़ लगाने के लिए लगी हुई है बहुत सी लड़कियां है और इन्होंने अपने कपड़े लगते लगते बिलिंगनी के ऊपर सुखाए हुआ है सामने की तरफ इनकी कॉलेज वगेरा --

और वहां पे जाकर इसके नीचे खड़ा होकर ये जेब में हाँथ डालकर एक फोटो सेल्फी खिचवा रहा है जिसके पीछे की तरफ दूर तक देंखे तो एक झरना दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहे है।

इसमें एक बच्चे ने हाथ में रंगीन कलर का संतरे कलर का धूमा ले रखा है।